मुझे इस तस्वीर पर चार औरते दिख रहा है।

हेयर ड्रायर मशीन भी दिख रहा है।

सी_सी_टी_वी कैमरा भी दिख रहा है।

एक छोटा सा फ्लावर गार्डन भी दिख रहा है।

जिसके अंदर इंसान भी है।

बहोत सारे बैलूने भी टांगे हुए है।

बहुत सारे चॉकलेट्स भी है।

लोहे से बने गेट भी दिख रहा है बाइक भी दिख रहा है।

इंसान भी दिख रहा है।

पत्तियां भी दिख रहा है।

एक इंसान भी दिख रहा है।

बहुत सारे घास भी उगे हुए हैं।

बहुत सारे लाइट्स भी टंगे हुए हैं।

दो बोर्ड भी टंगे हुए है बहुत सारे पेंट बकेट भी है।